जिस पर खाने का सामान और प्लेटे रखी हुई--

मुझे यहां बहोत सारी आइसक्रीम दिखाई दे रही है।

और यहां कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

लगी हुई हैं और यहां बहुत सारे पेड़ भी --

ये एक बहोत बड़ी दुकान दिखा --

बहोत सारे डेस्क डले हुए हैं और यहां कई बोर्ड भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में बहोत सारी हरी मिर्चें दिखाई दे रहीं हैं।

खड़ी दिखाई दे रही हैं यहां पर बहुत बड़ी सड़क नजर आ रही--

ये तस्वीर एक स्विमिंग पूल की--

और यहां बहोत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे--

इस तस्वीर में एक बहोत बड़ा प्लॉट दिखाई दे र--

इस तस्वीर में एक गिफ्ट शॉप नजर आ रही है।

इस तस्वीर में दो तीन।

इस पर एक बहुत सुंदर बोर्ड लगाया गया है और यहां--